भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारे--

ये मेरे सामने कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारे कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारी लाइटिंग भी दिखाई दे रही है।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

परिवाश भी दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सोफे भी लगे हुए दिखाई दे रही हैं।

यहां पर छोटे छोटे गमले भी रखे हुए दिखाई दे रहे है यहां पर एक गाड़ी भी खड़ी हुई दिखाई--

मंदिर में बहुत सारे फूल भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारे झंडे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

चौक पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी दिखाई दे रहे यहां पर एल_जी का लोगो भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।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

यहां पर बहोत सारे बलून भी दिखाई दे रहे है यहां पर का कलर दिखाई दे रहा है।

शीशे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ फरीज भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

मेरे सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा हैं रेस्टोरेंट में बहोत सारे लोग भीं दिखाई दे रहें हैं रेस्टोरेंट में बहोत सारे शीशे भीं लगे हुए दिखाई दे रहें हैं।

यहां पर का लोगो येलो कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सारे शीशे भी लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बुकों का कलर रेड कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर बच्चों के लिए किताबों के साथ साथ पेन पेंसिल भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

ये मेरे सामने पुनीत फुटवियर दिखाई दे रहा है।

एक कंप्लीट है फैमिली फुटवियर शॉप भी दिखाइ--